दुकान लग रही है जहां पर एक लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ है।

शीशे के आस पास बहोत सारे पर्दे हैं।

यही एक दुकान लग रही है दुकान में एक ये रैक है जो रैक काले रंग का है।

सामने एक टेबल है जो ट्रांसपेरेंट है।

जहां पर सामने एक शीशा लगा हुआ है।

पानी जो है शांत है और बत्तख की--

झूमर जो सफेद रंग का है टेंट लाल रंग का है झूमर के नीचे एक टेबल लगा हुआ है।

आगे से स्काई ब्लू और पीछे से ब्लू रंग की है जो थोड़ा डार्क है।

दोनों बेड पर लाल रंग की चादर बिछी हुई है दो स्टडी टेबल हैं एक व्हाइट रंग का और एक पीच रंग का है।

यह एक बहोत बड़ा मैदान है।

कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं सामने दो लेडिस बैठी है।

जैसे यहां पर बहोत सारी क्यारियां बनी हुई हैं।

जहां पर ऊपर एक बैनर लगा हुआ है जिसपे लिखा है न्यू इंडियन जनरल स्टोर साइड में लिखा है।